बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई--

और कुछ यात्रीगण आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

कई पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और कु--

दे रही हैं यहां पर हमें कुछ सीटें रखी हुई दिखाई--

बहेता हुआ पानी भी दिखाई दे रहा है।

दे रहे है और कुछ हरे भरे पेड़ पौधे भी दिखाई--

दे रही है जहां पर कुछ यात्रिगढ़ आते जाते दिखाई--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

इस फोटो में हमें एक बड़ी सी--

दे रही है यहां पर बहुत सारे यात्री आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दे रहे हैं और बहुत सारी कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई--

बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है जहां पर कुछ यात्रिगढ़ आते जाते दिखाई--